यहाँ पे कुछ मकान बने हुए हैं मकान के उम्म बाहर गेट लगे हुए हैं एक मकान के अंदर एक मशीन रखी हुई है।

लेडिसे खड़ी हुई है। सभी लेडिसो ने साड़ियाँ पेहनी हुई है। बड़े-बड़े टीके लगाए हुए हैं। आस पास पानी भरा हुआ है।

पुल पे रेलिंग लगी हुई है वो एक और एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर आस पास --

फूल मालाएं लगी हुई है। आगे एक नसेनी रखी हुई है | कुछ लोग खड़े हुए है। लेडीसे हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं।

यहाँ पे एक माता जी की झाँकी लगी हुई है माता जी वीणा लिए हुए हैं उनके गले में माला डाली हुई है।

यहाँ पे एक मकान है | मकान में दो शटर लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक रथ है उस पे भगवान की मुर्तिया लगी हुई है केले के पत्ते लगे हुए है माइक लगे हुए है।

कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। कुछ रैपर रखे हुए हैं। निचे जमीन पे बोहोत सारे रेत रखे हुए हैं। सामने रोड है। रोड पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक औरत चल रही है।

एक आदमी औरत बैठी हुई है । एक आदमी बैठा हुआ है । एक स्टूल रखा हुआ है ।

यहाँ पे बड़ी सी नदी है । नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है । पुल के ऊपर --